सी और C में लॉजिकल ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लॉजिकल एंड जैसे एक्सप्रेशन1 एक्सप्रेशन2 के बारे में सीखेंगे
लॉजिकल ओर जैसे एक्सप्रेशन1 ओर एक्सप्रेशन2 लॉजिकल नोट जैसे नोट हम उदाहरण की मदद से यह करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू 1110 उबंटू पर जीसीसी और g कम्पाइलर वर्ज़न 461 लॉजिकल ऑपरेटर के परिचय के साथ हम शुरू करते हैं
सी और C में ट्रू 0 के अलावा कोई भी अन्य वेल्यू है
नोन ज़ेरो का मतलब ट्रू है
ज़ेरो का मतलब फलसे है
लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर एक्सप्रेशंस ट्रू के लिए 1 और फलसे के लिए 0 दर्शाता है
अब मैं एक उदाहरण की मदद से लॉजिकल ऑपरेटर समझाऊँगा
यहाँ सी में लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम है
मैन ब्लॉक के अंदर
यह स्टेटमेंट आ ब और सी वेरिएबल को इंटीजर के रूप में दर्शाता है
प्रिंटफ स्टेटमेंट यूजर को आ ब और सी की वेल्यूस को दर्ज करने के लिए संकेत करता है
स्कैन्फ स्टेटमेंट यूजर से वेरिएबल आ ब और सी के लिए इनपुट लेता है
यहाँ सबसे बड़ी वेल्यू खोजने के लिए हम आ की वेल्यू की तुलना ब और सी से कर रहे हैं
एक साथ तुलना करने के लिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं
यहाँ ट्रू वेल्यू रिटर्न करने के लिए लॉजिकल एंड की सभी कंडीशन्स ट्रू होनी चाहिए
फलसे कंडीशन का सामना करने पर आगे के एक्सप्रेशन का मूल्यांकन नहीं किया जाता
अतः एक्सप्रेशन एसी तो ही का मूल्यांकित होता है यदि एबी ट्रू है
यदि आ b से कम है तो एक्सप्रेशन का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा
यदि पिछली कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट का मूल्यांकन किया जाता है
आगे बीसी मूल्यांकित है
यदि कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पर ब इस ग्रेटेस्ट प्रदर्शित होता है
अन्यथा स्क्रीन पर सी इस ग्रेटेस्ट प्रदर्शित होता है
अब हम लॉजिकल ओर ऑपरेटर पर आते हैं
यहाँ ट्रू वेल्यू रिटर्न करने के लिए लॉजिकल ओर के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू होगी
ट्रू कंडीशन का सामना करने पर एक्सप्रेशन का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाता है
अतः यदि आ ज़ेरो है तो बाकी दो एक्सप्रेशन का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा
यदि आ ब या सी जीरो है तो यह प्रिंटफ स्टेटमेंट निष्पादित होती है
प्रोग्राम के अंत में आते हैं
रिटर्न 0 और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट
अब प्रोग्राम को सेव करें
एक्सटेंशन c के साथ सेव करें
मैंने अपनी फ़ाइल logicalसी नाम से सेव की है
Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
कोड को कम्पाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस लॉजिकल डॉट सी स्पेस माइनस ओ स्पेस लॉग एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें log एंटर दबाएँ
मैं यह वेल्यू दर्ज करूँगा
आउटपुट प्रदर्शित होता है
सी इस ग्रेटेस्ट थे प्रोडक्ट ओएफ आ ब एंड सी इस ज़ेरो आपको इनपुट के भिन्न सेट के साथ इस प्रोग्राम को निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए
अब वही प्रोग्राम C में लिखते हैं
मैंने पहले ही प्रोग्राम बनाया है और मैं आपको बताता हूँ
यहाँ C में कोड है
अब वही प्रोग्राम C में बनाने के लिए हम कुछ बदलाव करते हैं
यहाँ हेडर फाइल में बदलाव है
यूजिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल की गयी है
और यहाँ आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट में एक अंतर भी है
ऑपरेटर वैसे ही काम करते हैं जैसे वे सी में करते हैं
सेव पर क्लिक करें
सुनिश्चित करें कि फाइल एक्सटेंशन cpp के साथ सेव की है
Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
प्रोग्राम कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g logicalसीपीप स्पेस माइनस ओ स्पेस लॉग1 एंटर दबाएँ
निष्पादन करने के लिए टाइप करें log1 एंटर दबाएँ
मैं यह वेल्यू दर्ज करूँगा
अतः हम सी प्रोग्राम के समान आउटपुट देखते हैं
आपको इनपुट के भिन्न सेट के साथ प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए
अब हम एक एरर देखते हैं जो आ सकती है
एडिटर पर जाएँ
मान लीजिए यहाँ हम ब्रैकेट्स भूल गए
इसे डिलीट करें
देखते हैं क्या होता है
प्रोग्राम सेव करें
टर्मिनल पर वापस आ जाएँ
पहले की तरह कम्पाइल और एक्जीक्यूट करें
हम एक एरर देखते हैं एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बेफोर टोकेन
यह इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास दो भिन्न एक्सप्रेशन हैं
हमें एंड ऑपरेटर का उपयोग करके उनका मूल्यांकन एक एक्सप्रेशन के रूप में करना है
अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएँ और एरर फिक्स करें
यहाँ ब्रैकेट्स प्रविष्ट करें
सेव क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
पहले की तरह कम्पाइल और एक्जीक्यूट करें
अतः अब यह काम कर रहा है
अब इस ट्यटोरियल को सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखालॉजिकल एंड जैसे आ ब आ सी लॉजिकल ओर जैसे आ 0
ब 0
सी 0 नियत कार्य एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट के रूप में दो नंबर ले
नोट ऑपरेटर का उपयोग करके जाँचें कि दो नंबर बराबर हैं या नहीं
सुझाव आ ब निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ